जिस में सफ़ेद और गुलाबी रंग के उम्म फूल भी लगाई गई हैं और यहाँ केसरी रंग का भी फूल है। यह फूल बहुत सुंदर लग रहें हैं।

ये एक सब्जी की दुकान का दृश्य हैं जिसमे बहुत सारे आ आलू है।

ये एक टोकरे में भर के आलू हैं जिसमें छोटे-बड़े और हार्स तरह की आलू है थोड़े ख़राब थोड़े अच्छे हर तरह के आलू है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत बन रही हैं जिसमे ये दो लोग ठहरे हुए हैं ये आदमी लाल रंग का टी-शर्ट पहना हुआ है।